इस तस्वीर में हमें बहोत सारा वेजिटेबल भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में ए_टी_एम मशीन भी नजर आ रहा है।

व्हाइट कलर का वाल दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

बहुत सारा चेयर दी भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

सीलिंग में लाइट बल्ब जलती हुई दिखाई भी दे रहा है और कुछ डिजाइन भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में एच_डी_एफ_सी बैंक लिख कर नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक रस्ता दिखाई दे रहा है रस्ता का किनारे में बहोत बड़ा बड़ा बिल्डिंग घर दिखाई दे रहा है।

ऑटो और बहुत सारा बाइक भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक दिखाई दे रहा है लाइट पोस्ट का।

इस पिक्चर में हमें खाली मैदान दिखाई दे रहा है।

मे ग्रीन ग्रास नजर आ रहा है इस पिक्चर मे।

इस पिक्चर में हमें बिल्डिंग घर दिखाई दे रहा है।

वाल में कुछ लिखकर नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

दरवाजा भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

कैलेंडर और ब्लैक बोर्ड भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमें।

तस्वीर में हमें एक रूम नजर आ रहा है।

माउस भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें सामने में मॉनिटर भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का वॉल नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

लिंग में बहुत सारा फैन भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमे बहोत सारा पेड़ पौधा नजर आ रहा है।

सामने में टीना घर और पक्का घर भी दिखाई दे रहा है।

सामने में ग्रीन कलर का मिर्चा भी दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का मिर्चा भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में लोहा गमला भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

टावर भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

दुकान में बहुत सारा कार्टून दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें हॉर्लिक्स दिखाई भी दे रहा है इस तस्वीर में हमें--

में व्हाइट कलर का फैन लटका के भी नज़र आ रहा है।

बोतल का अंदर फेविकोल भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

आसमान में वाइट कलर का बादल भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें।

फेस में व्हाइट कलर का कुछ लगा के नजर आ रहा हैं।

दरवाजे के ऊपर में पोस्टर गेट बनाकर भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमे।

दुकान में लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर का।

इस पिक्चर में इस पिक्चर में हमें गेट के सामने फूल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक घर दिखाई दे रहा है घर का सामने में पाइप और नल भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें घर का सामने में गाड़ी भी दिखाई दे रहा है इंसान भी नजर आ रहा है।